दो औरते अंदर जाती हुई दिखाई दे रहीं है। औरतों ने साड़ी पहनी हुई है एक ने हरी एक ने नारंगी और काले रंग की दोनों ने स्वेटर डाला हुआ है शॉल डाली हुई है नीली और काले रंग की एक आदमी अंदर दिखाई दे रहा है। बहोत से पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

नीचे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है ऊपर छत गुलाबी रंग के दिखाई दे रही है पीछे की दीवार सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

एक खंभा है जिसपे बिजली के तार लगे हुए हैं पीछे काफी पेड़ दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू घर बने हुए हैं सब बंद है और गली बहुत ही गंदी है।

आगे का फर्श हरे रंग का दिखाई दे रहा है। कोने में मिट्टी भी दिखाई दे रही है एक जंगला बना हुआ है जिसमें काला कलर का रंग हो रहा है।

गुंबद सी बनी हुई है जो सफेद रंग की है पीछे से पेड़ दिखाई दे रहे हैं। बाहर कई सारी चप्पले रखी हुई हैं। बहुत सारे अंदर घंटे लगे हुए हैं। कई लोग पूजा कर रहे हैं अंदर खड़े --

और सीढियाँ बनी हुई हैं सीढ़ियों से चढ़ कर ऊपर एक औरत दिखाई दे रही है सीढ़ियों में रेलिंग लगी हुई है स्टील की बगल में एक लड़का भी सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा है और एक और तरफ सीढियाँ बनी हुई है जहाँ एक और जना जा रहा है।

यहाँ एक बल्ले रंग की डिजाइन में काले रंग कि प्लेट रखी हुई है। इसके बगल में चम्मच रखी हुए है एक चक्खु सा रखा हुआ है काले रंग का।

पूल काले रंग का दिखाई दे रहा है। नीचे नदी पीले रंग की दिखाई दे रही --

यहाँ कई लोग नीचे बैठे हुए हैं।

दीवारों का रंग गुलाबी रंग का है और सफेद रंग पीले रंग की और सफेद रंग की धारियाँ बनी हुई हैं। काफी बड़े-बड़े जंगले भी हैं।